तो कुछ लोग मल्टी कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

बगल में बड़ा सा पेड़ लगाया हुआ है।

यहां पे कई सारी लड़की लोग नृत्य कर रही है।

उस पर बैंक लिखा हुआ है आर_एल_वाइ लिखा हुआ है।

लाइटें लगाई हुई हैं वाइट कलर की।

यहां पर हॉल का दृश्य दिख रहा है।

एक लड़की है जो पीली कलर का टी शर्ट पहनी है और ब्लैक कलर का जींस पहनी है।

यहां पर वाइट कलर की गाड़ी का दृश्य दिख रहा है।

इसमें कई सारी रेखे बनाई हुई है लकड़ी का।

इस पर गाय और मछली और मुर्गी का दृश्य दिख रहा है।

यहां पर क्लीनिक का दृश्य दिख रहा है।

और टेंपो की कलर है ब्लू और ग्रीन कलर की।

बैठने वाला बेंच बनाया जैसा लगाया हुआ है।

यहां पर रेस्टोरेंट का दृश्य दिख रहा है।

और दो हिरण है जो खड़ी है एक साथ।

कई सारे दृश्य देख रहे हैं।

कुछ लोग के हाथ में एक बड़ा सा डंडा है।

बगल में बहुत सारे पत्थल है बड़े बड़े छोटे छोटे।

यहां पर कई सारे बिल्डिंग का दृश्य दिख रहा है।

और इस पे बहुत सारे सामान रखे हुए हैं पेंट करने का।

बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

कुछ डब्बे ये सब भी रखें हुए हैं रेड कलर की।

कुछ महिला और कुरु कुछ पुरुष लोग हैं।

उस पर बहोत सारे बैलून रखे हुए हैं येलो कलर के।

बीच में खाना रखने वाला बनाया गया है उसमें कुछ खाना रखे हुए हैं।

एक कुर्सी रेड कलर की है एक कुर्सी ब्लैक कलर की है।

कई सारे बैग रखे हुए हैं।